इसमें हमें कोई भी कस्टमर या ओनर नहीं दिख रहा।

इसमें हमें बहोत सारी लोग भी नजर आ रहे हैं।

रेल गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में हमें एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जा रही है।

हमें किसी बहोत ऊंची इमारत की--

नीची क्रीम कलर का मैट भी है।

इस दृश्य में हमें कोई धार्मिक जगह दिखाई जा रही है।

देखने से यह हमें कोई इवेंट की तस्वीर दिखाई जा रही है।

इस दृश्य में हमें एक मेज दिख रहा है।

इस दृश्य में हमें एक गुरुद्वारा दिखाया जा रहा है।

इस दृश्य में शायद हमें कोई दुकान दिखाई जा रही है।